और चार ठो चेयर दिखाई दे रहे हैं।

और खिड़की से घास वास भी दिखाई दे रहे हैं।

ये आईना के नीचे में काला करके भी है।

यहां पे हेड फोन लोग भी है दिखाई दे रहा है।

और एक कंप्यूटर भी है।

इहापे एक फेस को ढक के खड़ा होके माइक पकड़ के है।

बीच में बहुत ज्यादा बम्बू फेके है।

सामने में पेड़ का पत्ता सब है।

मेकिंग मिठाई कूल अगेन बोल के लिख के भी है।

यहां पे बहुत ज्यादा लड़की लोग है और लड़का भी है सबका चेहरा को ढक के है।

इधर में भी एक घर के अंदर में बहोत अंधेरा है।

सोफा सेट भी काला कलर का ऊपर में और नीचे में ग्रीन कलर का है।

पीछे में भी है फ्रिज दिखा दे रहा है और बहुत ज्यादा स्प्राइट है।

ये जो एक दुकान है ये दुकान के अंदर में एक आदमी जो हाथ टूट के बैंडेज बांध के है।

बीच में एक पेपर में कुछ सुपरमैन का फोटो लगाया हुआ है।

फोटो में पिज़्ज़ा लिखे हैं और ऊपर में लाल शेप बनाके है।

ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए खड़ा हो के बच्चा और वहां पे लड़की लोग भी है।

ऊपर में श्री श्याम स्वीट्स लिख के है।

इस साइड में भी लड़का लोग दिख रहे--

ये जो एक दुकान है और ये दुकान के अंदर में बहौत ज्यादा चीज है खाने वाला।

नीचे में भी कुछ कुछ बहुत ज्यादा कुछ रखा हुआ है।

अंदर में ठो चेयर दिखाई दे रहे--

नीचे में बहुत ज्यादा कार भी दिखाई दे रहा है गाड़ी सब।

ये जो एक घर दिखा रही है फोटो में।

वहां पे टेबल व्हाइट का भी रख के है।

फोटो में एक घर दिखाके है ऑरेंज और येलो कलर का मिक्स करके है।